यहाँ पे बहुत सारा बॉक्स है ड्र ड्रमपेट है माइक है गिटार है।

बच्चा खड़ा है जिसका सर्ट का कलर है रेड ।

यहाँ पर एक ईटा का मकान भी है उसके ऊपर लाइट भी लगा हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारे बुक्स है यहाँ ऊपर मे स्टिकर सटा हुआ है।

यहां पर बहुत सारा गेट है।

पीछे में बहोत सारा बस लगा हुआ है जिसका कलर येलो है।

यहां पर कुछ लोगों ने बैग अपने पैर पास रखा हुआ है।

यहां पर सभी लोग बड़े से चेयर पर बैठे हुए हैं चेयर का कलर ऑरेंज है।

घर पर सोलर लाइट लगा हुआ है यहां पर एक ग्रीन कलर का टेंट है।

यहां पर एक आदमी बेच रहा है जिसने गंजी पहना हुआ है।

यहां पर शोरूम के बगल में एक दुकान है जहां पर सर्विस होता है।

यहा पर एक छोटा सा बिल्डिंग है।

जो मार्बल है यहां पर बहुत सारी लाइट्स हैं।

यहां दीवार पर भी बैलून लगा हुआ है।

सामने मे हैप्पी बड्डे लिखा हुआ है जिसका कलर सिल्वर है उसके पीछे मे जो डेकोरेशन है उसका कलर गोल्ड है।

यहां पर एक रेड कलर का टेबल है यहां पर कुर्सी है।

यहां पर एक शीशा का गेट है और गेट के अगल बगल में बैलून लगे हुए हैं बैलून के कलर रेड है व्हाइट है।

सामने में एक पीला कलर का बोर्ड है जिसमें जपला लिखा हुआ है।

और उसके पीछे ट्रेन है यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसके शर्ट का कलर है व्हाइट ।

यहां पर बहुत सारी लाइट्स है यहां पर एक बड़ा सा पेड़ है।

यहां पर एक ग्रीन कलर का बॉक्स है एक ब्राउन कलर का बॉक्स और यहां पर एक बड़ा सा ग्राउंड है।

यहां पर बालू है ग्राउंड है।

यह एक बिल्डिंग है जिसका कलर व्हाइट है और पिलर का कलर ऑरेंज है।

सामने में दो खिड़की है और पिलर के उस तरफ भी खिड़की है और इहा नीचे में भी पिलर के बगल में खिड़की है।

यहां सामने में शीशा लगा हुआ है यहां पर बहुत सारी लाइट्स लगे हुए हैं।

यहां पर एक आदमी खड़ा है जिसके हाथों माइक है और उसके सामने एक बड़ा सा बॉक्स है यहां पर पियानो है।

यहां पर एक व्यक्ति का हाथ है जिसके हाथ में कप है।

और एक खिड़की गेट के उस तरफ़ है यहाँ पर एक लंबी सी सीढ़ी है।